इस पिक्चर में एक बोहोत बड़ी --

खड़ी हुई है बैंक के इधर भी एक बिल्डिंग देखी जा सकती है बिल्डिंग का कलर पिंक --

इस पिक्चर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और बिल्डिंग डबल मंजिल है। बिल्डिंग तीनो और से बनी हुई है। बिल्डिंग का कलर ब्लैक एंड व्हाइट कलर --